इस चित्र में बहुत सारे लोग दिख रहे हैं।

इस चित्र में बहुत सारा खाना दिख रहा है।

इस चित्र में एक आदमी काम करता दिख रहा है एक मशीन नजर आ रही है।

इस चित्र में एक शोरूम दिख रहा है।

इस चित्र में एक मूर्ति दिख रही है एक रोड नज़र आ रहा है कुछ पेड़ दिख रहे हैं।

इस चित्र में दो आदमी दिख रहे हैं ग्रीन कटोरा नजर आ रहा है कुछ पेड़ दिख रहे हैं।

इस चित्र में एक कंकाल दिख रहा है कुछ पर्दे नजर आ रहे हैं।

एक लड़की जाती नजर आ रही है।

कुछ जिम की मशीन नजर आ रही है।

इस चित्र में बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं एक कार नजर आ रही है।

कुछ लाइट्स जलती नजर आ रही हैं।

सफेद दरवाजा दिख रहा है कुछ पेड़ नजर आ रहे--

यलो दीवार नजर आ रही है।

इस चित्र में एक गेराउड दिख रहा है। कुछ पेड़ नजर आ रहे है।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

ग्रीन पुल शेड दिख रहा है।

कुछ लोग खड़े दिख रहे हैं।

इस चित्र में कुछ लोग दिख रहे हैं।